पिंक कलर की बड़ी बिल्डिंग दिखाए दे रही है डी बिल्डिंग के ऊपर मे कुछ नाम लिखा हुआ है और कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है सामने एक गेट दिखाई दे रहा है।